उसके बाहर कुर्सियां पड़े है लाल --

दुकाने है और यहाँ पर पीछे घर बना हुआ है जो की नीले कलर तथा भूरे कलर का दिख रहा है।

और यहाँ पर इसके फर जो है वो सफेद कलर के हैं पीछे का जो प्लंब लगा हुआ है ओ भी सफेद कलर का है।

फावड़ा लेकर खुदाई कर रहे है मिट्टी का रंग जो भूरा हैं।

यहाँ पर एक छाता भी रख है।

वो गोल्डन कलर का है पीछे की जो दिवार है वो सजाई गयी है।

स्काई ब्लू कलर की है तथा उसे लाल और सफेद कलर से सजाया गया है।

की सामने इसके टावर लगा हुआ हैं हरे-भरे--

तथा गाय जो है बँधी हुई है दोनों --

मिट्टी है जो मिट्टी का ब्राउन है।

इसमें यहाँ पर नीचे रेक्सीन बिछी है जो की हरे रंग की है।

जैसा की मै देख पा बोहोत सारे मिस्त्री काम कर रहे है।

जैसा की मैं देख पा रही हूं यहाँ पर लोग बोटिंग कर रहे है जैसे --

जैसा की मै यहाँ देख पा रही हूँ यह स्विमिंग पूल हैं जहाँ पर लोग नहा रहे हैं।

जो हेल्मेट हे वो भूरे कलर की--

जैसी की मै देख पा रही हूँ यह एक ग्राउन्ड जहां पर बाहर बहुत सारे बच्चे बाहर झुंड लगा के खड़े हुए हैं।

कुछ पेपर लिए हाथ में औरत ने कुर्ती पहनी है तथा --

और भगत सिंह कि फ़ोटो लगी हुई है और--

पिले गुलाबी और हरे रंग के और यहाँ पर इसमें पेंट किया गया है लाइट हरे --

पहाड़ी बनी हैं पहाड़ जो हैं उसका कलर हैं।

यहाँ पर बहोत अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है बहोत सारी लाइट लगी है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये स्विंमिंग पूल का बड़ा सा झूला है।

और आसमान सफ़ेद है बगल में इसके यहाँ पर--

कुछ टोकरियाँ रखी हुई है फावड़ा रखा हुआ है यहाँ पर --

तथा यहाँ पूल के प्लंब भी खड़े हुए है और छोटे-छोटे पेड़ है।

जैसा की मै देख पा रही हु यह एक सेलून है |

टॉवेल उसने ओढ़ी हुई है।

जगह है स्टेशन के बाहर जहाँ पर यह एक --

वो पूरा पिले कलर का पेंट हो रखा है और यहाँ पर काले कलर की कुर्सी पड़ी है।

और यहाँ छोटे-छोटे बाहरिक लगे है पहाड़ का रंग जो है वो थोड़ा सा पिला है।

जैसे की मै यहाँ देख पा रही हु यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमे भूरे कलर की मिट्टी है।